बहुत बड़ा पार्किंग नजर आ रहा है।

बहुत सारे यह जिम का सामान दिखाई दे रहा है।

और नाच रही हैं गा रही हैं औरतें।

और हाईलाइट भी दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सियों पे और ऊपर पंखा भी लग रहा है।